यह एक दुकान है इसका नाम कैंट एण्ड एक्वागार्ड अर्थोराइज्ड सर्विस सेंटर है।

यह एक रूम है यहां की दिवालों का कलर सफेद तथा भूरा दिखाई दे रहा है।

तथा यहां सफेद कलर का एक छोटा सा कमरा भी बना दिखाई दे रहा है।

जिसपे काफी कंकर तथा पत्थर पड़े हुए नजर आ रहे हैं।

तथा यहां दरवाजे भी लगे हुए हैं जोकि क्रीम कलर के हैं।

इस धर्मशाला का नाम धर्मशाला अयोध्या आवासी स्वर्णकार समाज ललितपुर है।

यह एक ट्रैक्टर तथा ट्रॉली है ट्रैक्टर का कलर नीला सिल्वर तथा काला दिखाई दे रहा है।

यह एक रूम है यहां की दिवाले सफेद कलर की है यहां एक कॉटन का पर्दा भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है जो कि काले कलर का है।

यह एक सड़क है यहां मोटरसाइकिल दिखाई दे रही है।

तथा रोड पे खंभे लगे हुई दिखाई दे रहे हैं तथा तार भी दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ सामने काफी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं जो एक पालने को लिए हैं जो काफी सजा हुआ--

सामने कुछ घर भी बने हुए दिखाई दे रहे हैं घर का कलर व्हाइट है।